यह एक तस्वीर है जो की एक बाइक शोरूम की तस्वीर है।

एक व्यक्ति राइट साइड में खड़ा है जो की नीले रंग का टी शर्ट पहना--

तस्वीर है जोकी एक कच्ची रोड जा रही है पतली सी।

ऊपर में आसमान साफ है जो घर है उसमें तीन खिड़कियां है जो कि ब्राउन कलर के दिख रही है।

यहां पे एक वेट मशीन भी रखा हुआ है और एक आदमी भी खड़ा है जो कि हरे रंग का शर्ट पहना--

यह एक तस्वीर है जो की एक घर के अंदर की तस्वीर है।